ये एक कमरा है एक चेअर रखी हुई है कांच है छोटे-छोटे--

दो रोड जा रहे है रोड के बहुत हरा भरा है।

इस लाइट का एक खंभा जा रहा है और बगल में पेड़ है।

दो-तीन बकरियाँ बैठी हुई है दो-तीन बकरियाँ खड़ी हुई है और पीछे पेड़ दिख रहे है।